बादल छाए हुए है रात्रि का समय है देखने में बहुत मस्त लग रहा है।

बहुत सारे पेड़ पौधे दिख रहे हैं | कदम का भी पेड़ जैसा दिख रहा है | एक आदमी खड़ा है |

यहाँ नदी है नदी बहुत बड़ा है इसमें पानी है।

नदी है नदी मे पुल बना हुआ है | देखने मे बहुत मस्त लग रहा है इसमें केला का पौधा दिख रहा है | बहुत सारे आदमी नदी मे स्नान कर रहे हैं | रंग-बिरंगे कपड़े पहने हुए हैं ।

काला कलर की बोर्ड है इसमें फूल बनाया हुआ है हेलो अंदर भी हैं ।

बल्ब जल रहा है देखने में बहुत अच्छा लग रहा है बैलून लाल है।